बहोत ही बड़ा घर है घर काफी बड़ा है उपर गैलरी बनी हुई है और यहा पे बोहोत छोटे छोटे खिड़की लगे हुए है एक बोहोत बड़ा गेट है और एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ है।

एक बहोत ही बड़ा अस्पताल नजर आ रहा है अस्पताल के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे है बाहर बोट सारी खिड़की लगी हुई है अस्पताल की गेलेरी मे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

स्कूल है स्कूल की गेली मे सब बच्चे बेंच-बेंच लगे हुए है यहा पे सब बच्चे बेठ हुए है यह अपने हाथों से कुछ डिज़ाइन बना रहे है इनके पास कलरपेपर है फेविकोल है सीजर है।

यहा पे अलग अलग प्रकार के बुकस है यहा पे काफी लोगो की भीड़ इकट्ठा हुई है यहा पे टेबल पे एक लेडीस बैठी हुई नजर आ रही है यहा पे कुर्सी पे बोहोत सारे लोग बैठे हुए है एक आदमी फोटो क्लिक करता हुआ नजर आ रहा है उपर कुडल लगा हुआ है और सफेद फुली की लाइट जलती हुई दीख रही है।

यहा पे बहोत सारे पेन की वेराइटी रखी हुई है टेबुल पे और एक खंभा लगा हुआ है जिसपे स्केनर लगा हुआ है फोन पे का स्कैनर है अंदर लड़का खड़ा है सफेद कलर का टीशर्ट पहेनके एक सांडी लगी हुई है अंदर टेबल रका हुहा है।

यहा पे एक जंक्शन है यहा पे प्लेटफार्म प्लेटफार्म होती है ट्रेन पटरी यहा पे ट्रेन खड़ी होती है लोग यहा से उतार के बाहर की तरफ आते है।

एक बहोत ही बड़ा जिम है जिम मे बोहोत सारी एक्सरसाइज़ मिशन रखी है जिम के अंदर काफी लोगो की भीड़ है यहा पे बोहोत बड़े बड़े मिरर लगे हुए है और सामने एक मिरर लगा हुआ नजर आ रहा है यहा पे बोहोत सारी लाइट लगी है लाइट जलती हुई दिख रही है।

बोहत ही बड़ा क्लासरूम है बोहत सारे बेंचेस रखे गए है तीन खिड़की बनी हुई है यहाँपे एक टीचर है टीचर ने साड़ी पहना हुआ है।

यहाँ पे द रोड लाइट लगी हुई है काफी बड़े बड़े खम्बे जिसमे लाइट जलती हुई नजर आ रही है लोग वाक कर रहे है एक आदमी साइकिल से जाता हुआ नजर आ रहा है और बोहोत ही ग्रीनरी है गार्डन में जो बोहोत ही प्यारी लग रही है और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है यहां पर।

और यहाँ पे ऊपर ग्रिल पे बोहोत साड़ी लाइट लगी हुई है लाइट जलती हुई दिख रही है ऐ-सी लगा हुआ है स्पीकर लगे हुए है बूट जगह पे खिड़की लगी खिड़की पे कर्टेन लगे हुए है और बोहोत ही प्यारा डेकोरेशन किया गया है।

यहाँ पे एक बैंक है और एक ए_टी_एम है नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर दो डिस ऐन्टेना लगा हुआ है।